मुझे यहां पे एक के_टी_एम बाइक की शोरूम दिखाया जा रहा है जिसके अंदर दो बाइक है और बाहर तीन बाइक है एक--

बाइक का कलर है वाइट एंड रेड दुसरे का कलर है ब्लैक उसके डोर पे लिखा हुआ है फ़ोन के डोर पे लिखा हुआ है रेडी टू यूज़ एंड ये सभलपुर में है ।

डिजाइनर टाइल्स रखा हुआ है और उसके बाहर सामने एक धूप में बाइक खड़ी है।

मेरे सा मेरे सामने एक दुकान दिखाया जारा है जिसके बहार बोहोत सारे फलो की टोकरी है जिसके दुकान का उनदर का कलर पिंक और--

व्हाइट कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है जिसके बाहर बहुत सारे पेड़--

लडकी जिसने कुर्ता और पेंट पहना हुआ है और एक बच्चा रेड कलर का गेंजी--

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे है और रेस्टोरेंट के सामने दो बाइक्स खड़ी है जिसमें से एक स्कूटी है स्कूटी का कलर ग्रे है।

अभी रात का समय है मेरे सामने कुछ दुकान है जिसमें से एक दुकान का नाम है गोकुल उसके बगल वाले दुकान में लाइट भी जल रहा है और--

बहुत सारी कार से घिरा हुआ है दुकान बहोत सुंदर है दुकान--

कुछ इंसान मेरे सामने खड़े हैं उसमें से एक लड़की ने व्हाइट कलर का स्कर्ट पहना हुआ है और ऊपर में ग्रे कलर का।

कुर्ता पहना हुआ है और बोत सारे लोग नाव को भी चलाने कि कोसिस कर रहे है ।

और सूरज भी बोहोत तेज निकला हुआ है बोहोत धुप है चारो और सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर के छोटे छोटे घास उगे है ।

मेरे सामने का नज़ारा बोहोत खुबसूरत है कुछ बत्तख बेठे हुए है पथ्हरो के ऊपर आस पास बोहोत सरे इंसान आये हुए है जिसमे से छोटे छोटे --

बोहोत सारे मोबाइल दिखया जारा है उसमे एक डॉलफिन मछली खेल रही है आस-पास दुकाने भी है सब बंध है दोपहर के समय के लिए--

मेरे सामने का नजारा बहुत अच्छा है एक दुकान का नजारा है दुकान का नाम है फ्रैंड्स कॉर्नर उसके बाहर तीन आदमी खड़े है।

ये सर्दियों का मोसम है सर्दियों के छुट्टी में सब कोई पिकनिक करने के लिए एक मैदान में इक्खटटा हुइए बोहोत सरे लोग है कुछ लोग खाना खा रहा है ।

खाना खाया है कुछ लोग परोस है कुछ लोग खड़े हुए है कुछ बाते भी कर रे है आस-पास बहोत --

उसके बहार तीन बाइक्स खड़ी है। एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने मुह्ह पर लगाया हुआ है अनदर बोहोत सारे इलेक्ट्रोनिक्स का--

सामान दिखाया जा रहा है उसके बाहर ऊपर ओ_डी में लिखा है टाटा स्काय और ओनिडा और--

पास में दो बिल्डिंग है जिसके कलर है एक का कलर है वाइट एंड दुसरे का कलर है येलो --

अभी सुभाह का समय है मेरे सामने एक पहाड़ का नज़ारा है बोहत खुबसूरत नज़ारा है उसके आस पास पेड़ पोधे है कुछ इंसान है और सामने--

अभी सुबह का समय है मेरे सामने एक ऑफिस के कार पार्किंग का दिखाया जा रहा है जिसके बाहर बहुत सारे--

इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगे हुए हैं उसके बगल में एक घर दिखाया जा रहा है उसके नीचे कुछ छोटे छोटे घर हैं दूर में बहोत सारे घर भी दिख रहा है और--

इस टावर में बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाये हुए है।

एक आदमी खड़ा है मोबाइल लेके और कुछ लोग बस मे चढ़ने के लिए खडे है कुछ चढ़ भी रहे--

दो बिल्डिंग्स दिखाया जा रहा है जिसमे से एक बिल्डिंग का कलर है ग्रीन और उसके बाउंड्री का कलर है रेड --

मेरे सामने एक कमरा है जिसमें दो बिस्तर है दोनों में बेड कवर लगाया गया है दीवार पे बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है और--

और पीछे एक बड़ासा होल्डिंग लगा हुआ है जिस जो है ओप्पो का।

के बहार एक आदमी चाय बना रहा है और अनदर एक येलो टीशर्ट में इंसान कुछ खरीदारी कर रहा है बहार एक आदमी फ़े कलर --

एक वेलकम का रिपेयर शॉप है और उसका होडिंग लगा हुआ है होडिंग रेड कलर का है और उसमें लिखावट व्हाइट कलर से किया गया उसके बगल में एक--

अभी सुबह का वक्त है मेरे सामने एक जे_सी_बी दिखाया जा रहा है जो गड्ढा खोदने का काम कर रहा है तीन आदमी खड़े हैं उसके सामने एक आदमी--

दुके उसका काम दिख रहा है और दूर एक बाइक भी खड़ी है दो लोग बातें कर रहे हैं एक ने ब्लू शर्ट और पेंट्स पहने हैं एक ने व्हाइट शर्ट ब्लैक पेंट पहना --

अभी सुबह का समय है मेरे सामने एक मार्केट का नजारा है जिसमे एक बाटक शॉप भी है जिसके सामने--

एक पेट्रोल भरवा रहे है बाइक में और आसमान बहोत अच्छा दिख रहा है आसमान का कलर नीला और सफेद में है पेट्रोल स्टेशन सफेद और नारंगी कलर में--

मेरे सामने एक क्लासरुम का नजारा है बहोत सारे स्टूडेंट बैठे हैं टीचर व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहा है।

एक आदमी बेठे हुए है बोत देर से सब कुछ देखे जाडा है और दूसरा आदमी सुने भी जाडा है ।